इस पार्क में ढेरो सारे घास है और कुछ छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पे एक मात्रा में बोहोत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे कपड़े लटके हुए हैं ।

धरम का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है जोकी बुद्ध जी का पूजा होता है और यह व्हाइट कलर लगता है।

और यहां काफी भीड़ रहती है यहां से कॉफी के सामने में बाइक लगी हुई है और ये बिल्डिंग काफी खूबसूरत दिख रहा है यहां पे अच्छी खासी लाइट लगी है।

और एक ग्रीन कलर का घर दिख रहा है ये चौराहे पे एक छोटा-सा पार्क बना हुआ है जो की स्टिल की रेलिंग के द्वारा चारों तरफ से घेरा हुआ और यहाँ पे एक बुद्ध जी की स्टैचू बना है।